फैक्ट्री जनरल में कई सारे आदमी लोग भी नजर आ रही है।

दीवार को ब्राउन कलर की टाइल्स से लगाया गया है।

रस्ता का बगल में मुझे एक कोकोना पेड़ भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे एक दुकान स्टोर दिखाई दे रहा है इस स्टोर के अंदर मे कई सारे सामान रखे गए है।

रूम के अंदर में स्टीकर भी चिपकाया गया है।

शेरनी को लोहे के पिंजरे के अंदर में कैद की गई है।

बिचों बीच वाला दुकान में मोबाइल रखा गया है।

शॉप के ठीक ऊपर में एक बड़ा सा पोस्टर भी लगाया गया है।

स्टोर के अंदर में कई सारे आदमी लोग बैठे हुए।

पोस्टर को लाल और येलो कलर से मिक्स की गई है।

शॉप के अंदर में मुझे पंखा भी नजर आ रहा है।

इस तस्वीर में मुझे हिंदू लोग नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर में मुझे एक बाग दिखाई दे रहा है।

आप में कई सारे पेड़ भी नजर आ रहा है।

तस्वीर के अंदर में मुझे एक घर दिखाई दे रहा है।

तस्वीर में मुझे एक बड़ा सा घर नजर आ रहा है।

बाइक का सामने में एक टेंट भी लगाया गया है।

घर के अंदर में कई सारी चेयर रखे गए हैं।

तस्वीर में मुझे एक सड़क भी नजर आ रहा है जो की बीचों बीच गुजर रहा है।

आपका सामने में एक गाड़ी खड़ा की गई है।

माथे में सांप बनाया गया है।